कार्ड-अ बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं। पंखा लगा हुआ है और उसके ऊपर से बहुत सारी चीजे टंगी हुई--

और सनसेट नजर आ रहा है। इसमें दूर में जा के एक बिजली का खंबा नजर आ रहा है और तार गई हुई है।

यह बस का कुछ ही भाग दिख रहा है जो की रेड कलर का है सामने एक पीले कलर की टंकी रखी हुई है जसिके कंधो पे बैग है|

हाँ वह शॉप नजर आ रही है जिसमें कुरकुरे निरमा साबुन वैक्स टॉफी बुक रखी हुई है।

छोटे-छोटे पत्थर भी दिख रहे हैं हिरण की दो कान हैं चार टांगे हैं एक पूछ है।